एक बिल्डिंग्स सी दिखाई पड़ रही है और आसमान बिलकुल साफ दिखाई पड़ रहा है।

यह एक केमिस्ट शॉप की दुकान है जहाँ पर बहुत सारे केमिस्ट के सामान और दवाइयां --

ई बिल्डिंग्स में झर बत्तियां लगायी गयी है जो काफी मनमोहक दिखाई पड़ रही है।

यह किसी का खाने की मशीन की तस्वीर है जो व्हाइट कलर का है | यह मशीन काफी बड़ी है।

रास्ता बनते हुए पत्थरों को काटते हुए पानी गिर रहा है।

यह किसी बिल्डिंग की तस्वीर है जिसका निर्माण कार्य जारी है।

घर की तस्वीर है।

माता रानी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है जो लाल-लाल जल रही और--

कोई खेल खेला जा रहा है और उसे देखने के लिए यहां पर काफी सारी --

यह एक रोड की तस्वीर है जहाँ पर काफी सारे --

यहाँ पे बोर्ड में बैंक ए.टी.एम. लिखा है और ट्वेंटी फोर ऑवर बैंक --